भाई इसमें एक लाल कलर की एक ई रिक्शा है इसमें और--

दो वाइट कलर है करेगी एक ब्लेक --

ये मेरे को डॉक्टर की दुकान जैसी कुछ लग रही है।

और इसमें तरह तरह की एक सौंदर्य झलक रहा है।

एक पत्थर रख रखा है थोड़ा यूनिक लग रहा है।

भाई ये मेरे को एक रूम जैसा कुछ लग रहा है।

भाई इसमें दो आदमी खड़े हुए है जोकि आग सेक रहे हैं यह सर्दियों का मौसम है।

और इसमें एक दो तीन चार पांच बंदे बैठे हुए हैं।

और इसमे और इसमें यह स्वतंत्रता योजना योजा निगम स्वतंत्रता तंत्रता दिवस की तैयारी कर रहे हैं।